भारत पेट्रोलियम लिखा हुआ है यहां पर हमें एक पाइप दिख रहा है।

बहोत सारी कुर्चिया लगी हुई दिख रही हैं।

ऊपर जिला परिषद स्कूल दिखाई दे रही है।

दग में रेड कलर के और व्हाइट कलर के बलूंस लगाए गए हैं।

यहां पर लाइटिंग्स लगाई गई है यहां पर हमें बहोत सारे लोग आए हुए दिख रहे है।

और हमे अ प्लास्टर होने को बाकी है अभी--